लड़के के पीछे एक गेट है जो की ब्लैक कलर का है पीछे वा वाइट कलर की वॉल है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ासा लॉन नजर आ रहा है जो की एक मॅरेज लॉन दिखाई दे रहा है।

जिम में दो लड़की है जो की सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे है।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

जो की एक बँक है बंद है बँक के बाहर एक ए_टी_एम है।

सामने एक रेड कलर का स्टूल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इनके ही नीचे ही योगा मैट बिछाया हुआ है पीछे वॉल है जो की येलो कलर की है।

कुछ सामान रखा हुआ है।

जो की बिच सेंटर में बना हुआ है बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।